और दो महिला दो आदमी सोफे में बैठे हुए हैं गाल में हाथ देकर।

इस इमेज में दिख रहा है एक दुकान दुकान के अंदर बहुत सारा ताक है ताक में पूरा सामान से भरा हुआ है और।

दो पेड़ दिख रहा है और बिल्डिंग के सामने कुछ लोग दिख रहा है जो क्या पैदल चल रहा है।

इंडिया पोस्ट ओफिश भारतिय डाक ओर--

मूर्ति में धैन पे बैठा हुआ है और--

इस इमेज में जो दिख रही है वो खरीदारी मार्केट का इमेज है यहां पर लोग खरीदारी कर रहा है ।